ये एक मोर है ये मोर बहुत अपना पंख फैलाये रखा हुआ है ये मोर में बहुत सारे रंग-बिरंगे रंग के उसके पर है।

आगे में एक झंडे है इंडिया का और दूर में किताब भी रखे हुए है ये यहाँ पे दूर पे बोतल एक लाल और एक सादा है।

यह दुकान के अंदर में तीन लड़के खड़े हैं एक आदमी बैठ कर है और दो आदमी खड़ा हैं।